merging और deleting branches पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न के बारे में सीखेंगे merging
merging पलटना और branches डिलीट करना
इस tutorial के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ: ubuntu linux 1404
git 232 और gedit text editor
आप अपनी पसंद का कोई भी editor उपयोग कर सकते हैं
इस tutorial के अनुसरण के लिए आपको git commands के मूल तत्व और git में branching का ज्ञान होना चाहिए
यदि नहीं तो सम्बंधित लिनक्स tutorials के लिए कृपया हमारी website पर जाएँ
श्रृंखला में पहले हमने branches बनाना सीखा
अब हम सीखेंगे कि दो branches को कैसे merge करते हैं
यह diagram समझाता है कि newmodule branch master branch के साथ कैसे merged होता है
यह c9 commit में किया जाता है
merging के बाद newmodule के commits master branch में जोड़े गए हैं
अब मैं समझाती how कि यह कैसे कार्य करता है
पहले हम अपनी git repository mywebpage खोलेंगे जो हमने पहले बनाई
terminal खोलने के लिए ctrl + alt + t दबाएँ
अपनी git repository पर जाने के लिए type करें cd space mywebpage और enter दबाएँ
प्रदर्शन के लिए मैं html files का उपयोग जारी रखूँगी
आप अपनी पसंद की कोई भी file type उपयोग कर सकते हैं
यहाँ से आगे terminal पर प्रत्येक command टाइप करने के बाद enter key दबाना याद रखें
अब git branch सूची check करते हैं टाइप करें git space branch
हम देख सकते हैं कि हमारे पास master और newchapter named दो branches हैं
newchapter branch श्रृंखला में पहले बनाया गया था और master default branch है
अभी हम master branch में हैं
हम निम्न टाइप करके git log check करेंगे git space log space hyphen hyphen oneline
अब newchapter branch पर जाते हैं और git log check करते हैं
type करें: git space checkout space newchapter
type करें: git space log space hyphen hyphen oneline
अब हम master और newchapter branches के commits की तुलना करेंगे
ये चारों commits दोनों branches के लिए समान हैं
added story html in newchapter branch newchapter branch में है
और added chapter two in history html master branch में है
merging के बाद added story html in newchapter branch commit master branch में जोड़ा जायेगा
अब मैं दिखाती how अभी merge कैसे करते हैं
type करें: git space merge space master
gedit commit message प्राप्त करने के लिए अपने आप ही खुलता है
याद करें कि हमने gedit को git के core editor की तरह कॉन्फ़िगर किया है
अगर आपने कोई अन्य editor कॉन्फ़िगर किया था तो वह ही खुलेगा
अगर आप एक git version उपयोग कर रहे हैं जो 19 से कम है तो हो सकता है editor नहीं खुले
तो आप अगली step छोड़ सकते हैं
मैं default commit message ऐसे ही उपयोग करती हूँ
अगर आप merging से सम्बंधित कोई any message देना चाहते हैं तो यह यहाँ type करें
अब editor को सेव और बंद करें
हम दोबारा git log check करेंगे
आप देख सकते हैं कि master branch के commits newchapter branch के साथ merged किये गए हैं
आप merging के लिए एक commit message भी देख सकते हैं
आगे हम master branch पर जायेंगे और commits check करेंगे
type करें: git space checkout space master
अब git log check करते हैं
यहाँ हमें newchapter commits के साथ master branch commits दिखाने चाहिए थे
लेकिन git log केवल master branch commits दिखाता है
आदर्श रूप से हमें master branch में newchapter branch merged करना चाहिए था
लेकिन हमने किसी अन्य तरीके से इसे merged किया है
इसलिए हम master branch में merging commit नहीं देख सकते हैं
अतः हम इस merging को कैसे वापस ला सकते हैं
इसके लिए हमें newchapter branch पर वापस जाना पड़ेगा
type करें: git space checkout space newchapter
merge पलटने के लिए type करें git space reset space hyphen hyphen hard space head tilde
याद रखें latest रिवीजन हमेशा head होता है और latest माइनस 1 रिवीजन हमेशा head tilde होता है
अतः merging का पिछला रिवीजन प्राप्त करने के लिए हमने head tilde उपयोग किया है
एक बार फिर git log check करते हैं
हम देख सकते हैं कि merging अब हटाई गयी है
अब हम newchapter branch को master branch में merge करेंगे
हम निम्न टाइप करके पहले master branch में जायेंगे git space checkout space master
अब दोबारा git log check करते हैं
merge करने के लिए हम type करेंगे: git space merge space newchapter
gedit में अपना merging commit message दें
फिर editor को सेव और बंद करें
दोबारा git log check करें
हम देख सकते हैं कि हमारा newchapter branch master branch में सफलतापूर्वक merged किया गया है
अब इसे दोबारा merge करने की कोशिश करते हैं
type करें: git space merge space newchapter
अब हम एक message देखते हैं जो दिखाता है already uptodate
यह अच्छा तरीका है यह प्रमाणित करने का कि हमने merged किया या नहीं
merging के बाद newchapter branch git repository से डिलीट किया जा सकता है
branch डिलीट करने के लिए type करें git space branch space hyphen d space newchapter
अब एक बार फिर branch list check करते हैं टाइप करें git space branch
हम newchapter branch को इसके बाद नहीं देख सकते क्योंकि यह डिलीट किया गया है
merging के बिना branch डिलीट करने के लिए छोटे अक्षर में hyphen d के बजाय बड़े अक्षर में hyphen d उपयोग करें
इसके साथ हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं
इसे सारांशित करते हैं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
एक नियत कार्य में branch chaptertwo जो हमने पिछले नियत कार्य में बनाया उसके commits check करें
इसे master branch के साथ merge करें और chaptertwo branch को डिलीट करें
निम्न link पर उपलब्ध video spoken project को सारांशित करता है
कृपया इसे download करें और देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाएं आयोजित करती है और online tests pass करने वालों को प्रमाणपत्र देती है
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
spoken tutorial project भारत सरकार के mhrd के nmeict द्वारा निधिबद्ध है